बहुत सारी महिलाएं है मूर्ति है। नूपुर वाइट कलर के --

स्टेज है स्टेज पर बैठने के लिए कुर्सी है कुर्सी पे लड़की बैठी हुई है।

मूर्ति बहुत अच्छे है और नीचे आम का पत्ता है और फूल लटके हुए हैं।

नदी के बगल बोट रुके हुए है बहुत सारे बोट चल रहे है।

जो कुर्ता पैजमा पहना हुआ है ब्लैक कलर का जुत्ता पहना है और वो कहीं देख रहा है।

एक आदमी कार को साफ कर रहा है कार के चार टायर दिखाई दे रहे हैं आईने दिखाई दे रहे हैं एक कार ऊपर है बहुत अच्छे तरह से उसे साफ किया जा रहा है।

गेट है ब्लैक कलर के दो-दो गेट हैं जा-बाहर जाने के रास्ते हैं। बच्चे नीचे मे बैठे हुए है। बच्चे के पास फेविकोल गम है।

यहां पे बहुत सारे आदमी है जिसमें महिला पुरुष बच्चे है छठ पूजा कर रहे है जिनमें बहुत सारे औरत है।

--और बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है मूर्ति को ऊपर टेंट लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है और बहुत अच्छे-अच्छे से कलर से सजाया गया है मूर्ति को।